जहां पर सामने बड़ा बड़ा ओप्पो लिखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है पेट्रोल पंप के नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी दिख रही है।

जहां पर बहोत सारे व्यक्ति मछलिया बेचते हुए दिख रहे हैं।

बलूंस लेगाए हुए हैं सामने एक व्यक्ति है।

पीछे एक पेड़ दिख रहा है।

इस चित्र में एक व्यक्ति बड़ी सी पत्थर की गुफा के अंदर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

सामने एक साड़ी पहने औरत एंकरिंग करती हुई दिख रही है।

कुछ चेयर्स लगी हुई है और चेयर्स पर कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

जिसके बाहर एक व्यक्ति पैसे गिनता हुआ नज़र आ रहा है।

इस चित्र में एक छोटा सा पार्क नजर आ रहा है।

शीशे का दरवाजा लग रहा है।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

झूलों पर कुछ बच्चे झूलते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज का--

और पौधे नजर आ रहे हैं।